जो की देखने में बहुत अच्छा लगता --

ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा लगता है देखने मे एच_एच_एल हॉस्पिटल लिखा हुआ है जो के देखने मे बहुत अच्छा लगता है।

में घुस करके खड़े हैं दो आदमी दिखाई दे रहा है एक आदमी ऊपर में हैं जो की अपने उंगली --